काफी बड़ा एक खेत दिख रहा है घास दिख रही है और नीचे पानी-पानी टाइप का पड़ा हुआ दिख रहा है और कुछ पीछे साइड पहाड़ जैसा दिख रहे है।